ये सब्जी मार्केट हैं यहां पर कुछ लोग सब्जी--

सामान रूखा हुआ है और पीछे साइड --

जो बहोत सुंदर लग रहा हैं।

चारों ओर घर बने हुए हैं।

बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए हैं और कुछ कैलेंडर टंगे हुए हैं।

ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं।

यहां एक घर है जहां हरे रंग की--

उसके पीछे एक बाउंड्री है जिसपे पीले कलर से पुताई की गई है।

दो चार दस लोग भी बैठे हुए हैं।